मुझे यहाँ पर दुकान नजर आ रही है।

बोहोत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।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

और दो टेबल भी नजर आ रही हैं।

और एक सीसीटीवी कैमरा भी नजर आ रहा है।

और एक पंखा भी नजर आ रहा है।

मुझे यहाँ पर बहुत सारी कार नजर आ रही हैं।

मुझे यहां पर बोहोत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

मुझे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।